स्टेज पे डांस कर रही है। वो लड़की साड़ी पहनी हुई है। गजरा लगाई हुई। यहाँ पे बोहोत सारे बलूनों से सजावट किया गया है। यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है। बोहोत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे डांस देखने के लिए।

यहाँ पे हर तरह के कपड़े उपलब्ध हैं। इस दुकान में बोहोत सारे लाईटस लगी हुई हैकुर्सी लगे हुए हैलोगों कि भीड़ लगी हुइ --

यहाँ पे कुछ लोग बगल में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह कमरा बोहोत बड़ा है। यहाँ पे बहोत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।